व्हाइट पिंक औरो ए हरे कलर की लाइट लगी हुई।

चेक्स का रंग में स्टाइल लगी हुई नज़र आ रही है ब्लैक और वाइट ।